एक हॉल इसे बहुत ही सूंदर तरीके से सजाया गया है यहां पर बहुत ही रंग बिरंगे कपड़ो का इस्तेमाल किआ गया है इसकी सजावट काफी सुन्दर है।

यह एक शादी का हॉल है इसके गेट को बहोत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है सजावट के लिए काफी सुंदर फूलों का इस्तेमाल किया गया है इस हॉल के बाहर एक गाड़ी भी खड़ी है।

एक स्टेज इसे बहुत सुन्दर तरीके से सजाया गया है इसकी सजावट के लिए चार खम्बे बनाये गए है और उन्हें--

एक कपड़े की दुकान है यहा पर लड़कों के लिए शर्ट टी शर्ट पैंट मिलते है यहा पर बहुत ही सुंदर तरीके से कपड़ों को सजा कर रखा गया है।

यहा कपड़े को बहुत ही सहज तरीके से रखा गया है यहां पर लाइट की भी और ए_सी की व्यवस्था भी की गयी है।

यह एक हाल है हाल मे लाल रंग की क़ालीन बिछाई गयी है हाल की पृष्टभूमि सफ़ेद और गुलाबी रंग के कपड़ो से की गयी है सजाई गई है।

यह एक कपड़ो की दुकान है यहा कपड़ा मीटर के हिसाब से मिलता है यहा हर तरह के कपड़ो के पीस मिलते है बहुत ही सुंदर-सुंदर कपड़ो के पी--

और उस यहा पे साफ सफेद रंग का सोफ़ा रखा गया है स्टेज की सजावट के लिए फूलों का और लाइट का इस्तेमाल किया गया है।

यहां स्टेज पर लाल रंग की कालीन बिछाई गई है यहां सजावट फूलो से की गई --